इस तस्वीर में हमने एक बार गार्डन दिखाया है जिसमें एक मूर्ति बनी हुई है और उसे मूर्ति के साथ दो बच्चे झूले जोड़ रहे हैं और पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़ी-बड़ी तरफ-तरफ दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़ा पार्क --

ईत में हमे एक बड़ा सारा महा विध्यालय दिखाई दे रहा है जो उसकी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो हरे रंग से पुती हुई दिख रही है।

दिखाई दे रहा पास में कुछ साइकिले भी खड़ी दिखाई दे रही है और सामने ग्राउंड जो कत्थई रंग का नज़र आ रहा कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

जहाँ सब कुछ पीला दिख रहा है या तीन पुरुषों की पोशाक है या पृष्ठभूमि सफेद है या टेबल है।

चित्र के अंदर हमें क्लास रूम नज़र आ रही है जहाँ बहोत सारी टेबले दिखाई दे रही है कथई रंग की बहोत सारी बेंच प्रेस भी दिखाई दे रही ह जो--

के अंदर हमे मुर्गे दिखाई दे रहे हैं जो कि कत्थाई काले रंग काले रंग का भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे गमले दिखाई दे रहा है इस में हरे रंग के दिख रहे इसके पास में नीले रंग के नेट पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सामने के बर्तन भी दिख रही है सामने कोई दीवारें भी दिख रहे हैं सामने कुछ गार्डन भी जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है।